यहां पे पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में पानी है यहां पे एक तार है बल्ब है बहोत अच्छी ब्रिज है।

भारतीय राज्य राज्य अ मार्ग प्रधान--

एक ऑफिस में मीटिंग चल रहा है उसके पीछे अंबेडकर जी का फोटो है.

साइड में एक गेट भी है बल्ब भी बर रहा है वायरिंग भी हुआ है तार।

और टी_वी है आती है अलमारी है।

और यहां पे कुछ समान सा धारा हुआ है चित्र भी हुआ है।

जो आदमी गया है वह ब्लू कलर का कपड़ा पहना है ऊपर लाइट लगा है।

दो आदमी एक साथ हाथ जोड़कर है।

यहां पे एक नदी है नदी में बहुत सारा आदमी खारा हुआ है।

और पटरी है पटरी के साइड में पेंट हुआ है।

और अंदर बहुत सारा तेल है सबसे ऊपर एक पैकेट है जो चाय पट्टी का बुझा--

यहाँ एक एक कैर्टून है शंख का--

उसके पीछे एक नदी है नदी में पानी भरा--

और यहां पे बच्चा बैठा है और लड़की खड़ी है।

और बेड है जो बेड पे खाली है कंपाउंडर टेबल पर कुछ लिख रहा है नीचा पक्का पिता यहां कचरा डीबा तीन धरा हुआ है ऊपर भी पक्का--

और यहां ए_सी कूलर लगा है फैन है।

यहां पे एक बाजार है चौक है चौक पे एक दुकान है भागवती टाइल्स एंड सेनिटाइज --

है ऊपर एक बोर्ड लगा है जिन पर लिखा है नीट आई_टी_आई जी --

उसके पीछे एक आदमी जा रहा है उजला कलर का शॉर्ट पहने--

और साइड में मकान है उसके बगल में भी चार चका का है बहुत--

यहां पे दो उतला कलर का कार खुला हुआ है एक बले कलर उसके पीछे उतला कलर का है एक आदमी है जो इंजन खोल इसके बागल में--

घास है वहां पे एक बैल बैठा है वहां पे एक जोपड़ी है जो--

है और यहां पे एक पेड़ सुखी हैं।

यहां पे उजला कलर का कुछ दिख रहा है यहां पे बॉल बढ़ रहा है।

ती हैं मन नैतिक हैं यहाँ पे बहोत आदमी निचे पड़ा है यहाँ पे जो आसमान नीला हैं उसके पीछे पेड़ हैं जो सूखा हैं।

यहां पे एक रेड बाइक है उजला बाइक है बहुत सारा एक आदमी उजला कलर का शर्ट पहना है पैट पहना है एक आदमी बैठा है बाइक पे एक आदमी--

बुढ़ी जा रही है यहां पे वोल्टो का ए_सी है उसके बगल में पेड़ पौधा है और--

नीचे पक्का पिता है गेट है शीशा का लगा हुआ है।

एक शोरूम है शोरूम का नाम है आर_जी_एस ।

और यहां पे कुर्सी है जो ब्लैक कलर का है।

और दीवार है एक होल्डर है जिसमें बॉल में लगाया है दीवार पेंट नीचा पक्का पिता है पक्का पर कुछ बिछाया भी है।

बस स्टॉप है वहां पे दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसी के पास एक पेड़ है।

और साइड में एक पर्दा भी लगा है जो--

एक आदमी है जो उजले कलर का शर्ट पहना है पैट पहना है जूता पहना है उसके आगे हेलमेट है।

पेड़ पौधा बहुत सा यहां पे जंगल भी है।

जिम क्लासरूम वहां पे एक जिम कर रहे हैं एक जिम --

ये तो ऑफिस है ऑफिस में बहुत सारा आदमी काम कर रहे।

एक ऑफिस है वहां पे बैड है ऊपर बल्ब भी लगा है साइड में कुछ और नीचे पक्का भी--

यहां पे बॉल बढ़ रहा है फैन भी है जो रुका है नहीं चल रहा है।